यहां पर बहुत सारी कारें खड़ी हुई हैं।

ये तस्वीर एक बहोत ऊँची इमारत की हैं।

यहां पर बहोत बड़ा सोफा दिखाई दे रहा--

हमे यहां ऑटो रिक्शा और बहोत सारे पेड़ भी नजर आ--

और कई पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यहा की जमीन कच्ची मट्टी की है यहा मट्टी का ढेर पड़ा है।

हमें यहां उसका दरवाजा दिखाई दे रहा--

ये तस्वीर एक मंदिर की है ये मंदिर बहुत ही सुंदर और --

और काफी जगह कच्ची मिट्टी की है यहां बहुत सारे पेड़ पौधे--

और कई मकान भीं बने हुए है बिजली का खंभा भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में बहोत बड़ा शॉपिंग मॉल दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे बोर्ड भी लगाए गए--

और ये आदमियों के अंडरवियर की दुकान है।